इस चित्र मे हमे एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है उस पर हल्की हल्की घास उगी है और एक अ --

वो स्टेज है बहुत सारे सीड़ियाँ है और उस सु सीढ़ियों पर बहुत सारे लोग बैठे है। बहुत सारी गाड़ियां है और कुछ --

इस चित्र में हमे एक होटल दिखाई दे रहा है जो की बहुत बड़ा है बहुत सारी खिड़कियाँ है और दरवाजे है ।

इस चित्र में हमें एक बहोत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है साथ में एक --

जहां पर लाइट्स की डेकोरेशन की हुई हैं। एक तीन से चार बड़ी-बड़ी यहाँ पर चेयर्स रखी हुई हैं। ब्लैक कलर में।